यह किसी इमारत के अंदर जानेका लंबासा रास्ता लगता है। जहा पर हमें जगह-जगह खूप सारी घास खूप सारे पेड़--

और हम दो बाइक्स को इस तस्वीर में हम देख सकते है और तस्वीर के बाई और एक बड़ासा पेड़ भी और इस तस्वीर में बोहत सारे बोर्ड भी लगे हुए है।

जिसमे हमे हरियाली ही हरियाली और उसके अंदर दो से तीन बेंचेस भी दिख रही है इस तस्वीर मे हम बड़े बड़े से खंबे भी देख सकते है।

यह एक बिलकुल शांत और खाली जगह लगती है। जिसमे हम छोटी छोटीसी घास एक बड़ासा पेड़ भी देख सखते है। जिसपर हमे ज्यादा पत्ते नजर नही आ रहे है वो हमे काला कालासा दिख रहा है शायद वे पेड़ सुख चुका है।

शायद ये किसी पार्क या अंदर जाने केलिए रस्ता है इसिलिय यहा इसे बोर्ड से किया गया है यहा बाहर दो से तीन बाइक्स भी खडी हुई है।

इस तस्वीर में हम देख सकते है एक बड़ी सी दुकान जिसका बैंगनी रंग का शटर है वो आज बंद है उसके साइड में एक बुक्स की दुकान है जो की खुली हुई है।

इस तस्वीर मैं हम देख सखते है की हमे खूप सारे ग्रे कलर के सोफ़े नजर आ रहे है इस तस्वीर मैं हमे कोई भी नजर नहीं आ रहा है।

पर इस तस्वीर मे सामने ही एक लड़की जिसके आसमानी आसमानी से रंग के बाल है उसकी तस्वीर लगी हुई है यह भी शायद किसी सलून के अंदर की हि तस्वी--

इसके आगे भी हम देख सकते है दो दुकाने है पर उनका शटर भी बंद है नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है काले रंग का जिसपे लिखा है प्रशांत--

तस्वीर हम देख सखते है की एक रोड है जिस पे साइट मे ही एक पेड़ के सहारे खूप सारा मलबा एकट्टा किया हुआ है।

प्रतीत होता है ये विद्या बुक्स की साइड से ली गई कोई तस्वीर है इस तस्वीर मैं देख सकते है की--

की बड़ा बड़ा लाल रंग से विद्या बुक्स लिखा हुआ है दुकान के बाहर एक आसमानी रंग का बोर्ड है और साइड में एक स्कूटर भी खडा हु--